ए बस स्टॉप है गोंदिया का जिसमें चेयर्स लगी है व्हाइट कलर की बस है ब्लू कलर की एक लड़का खड़ा है इसका रेड कलर का टी-शर्ट है।

दुकान है साइड में रेड कलर से लिखा है अब ब्लैक कलर में लिख है बरडीस। एक डॉगी है जो--

कूलर है ए_सी लगी हुई है।